यह एक स्कूल की बिल्डिंग है और यहां पर अह सामने बाहर की तरफ ग्राउंड है बहुत बड़ा।

यह बहुत बड़ा एक हॉल है और यहां पर बहुत सारे बैलून लगे हुए हैं लाइटें लगी हुई हैं और यहां पर बहुत सारे कुर्सियां हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं जो चाय पी रहे हैं।

और यहाँ पर एक काउंटर भी रखा हुआ है लेकिन सारी दुकाने बन्द हैं।

यह बहुत बड़ा एक ग्राउंड है और सामने की तरफ दरवाजे भी हैं कुछ उम्म और यहां पर पूरे ग्राउंड में बहुत सारी कुर्सियां रखी हैं कुछ चार पांच पलंग भी हैं।

ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर बहुत सारे बड़े-बड़े पत्थर भी हैं और यहाँ पर अ ईंटों से दीवारें सी बनी है और यहाँ पर झाड़ियां बहुत सारी हैं।

अ बहुत बड़ी एक वो बना रखी इनकी शिलासी और उसके ऊपर इनकी मूर्ति बनाई हुई है और बहुत बड़े-बड़े यहाँ पर पेड़ भी हैं।

और यहाँ पर सारे के सारे लोग पगड़ी बांध कर खड़े हैं और यहाँ पर औरतें भी हैं बहुत सारी और यहाँ भीड़ बहुत है।

और यहाँ पर सामने की तरफ बहुत सारे कपड़े भी टंगे फोटो लगे हैं और यहाँ पर एक आदमी है जो ये सब कपड़े दिखा रहा है।

और यहां लैपटॉप भी रखा हुआ है और अंदर की तरफ बहोत सारी लाइटें भी लगी हुई है और कुछ लोग अन्दर हैं।

और यहाँ पे जो है बांस के डंडे लगे हुए हैं उनके ऊपर त्रिपाल सी बिछी हुई है और पीछे की तरफ बहुत बड़ी बिल्डिंग है और यहां पर चारों तरफ पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं।

और यहां पर फल फ्रूट डलीया में बहोत बड़ बड़ डलीयां है।

ये कोई रूम है और यहां पर कुछ आदमी बैठे हैं और यहां पे एक बहुत बड़ी बेंच जो स्लिप पड़ी और उसके ऊपर कांच का उम्म शीशे की वो रखी हुई है अलमारी सी छो छोटी।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

अंदर तरफ बलून हैऔर यहा पे एक आदमी है जो सिर पे टोप अ क रूमाल बांध के खड़ा है।

और बहोत सारे यहां पे बहोत स-स सारे अं फूल लगे हुए हैं और पेड़ लगे हुए हैं।

यह बहोत बड़ा रेस्टोरेंट है और यहां पर मेजे रखी है और चेयर रखी हुई है और यहां पर टी_वी भी लगा है और यहां बहोत सारे शोपीस के समान है।

ऊपर की तरफ बहुत सारे बलफ़ झालरें लगीं हुई है यहां स्कूटीया भी खड़ी हुई हैं बहुत सारे बाइक भी खड़ी हुई है।

ये शोरूम है कोई अशोक लाइलैंड का और यहाँ पर जो है एक छोटा महिंद्रा की गाड़ी खड़ी हुई है।

और उधर की तरफ भी एक आदमी खड़ा है और दो एक बैठा हुआ है और सामने की तरफ काउंटर है उसपे भी लेडीजें बैठी हुई--

और उस हवन कुंड में लकड़ी हैं और एक हवन कुंड उधर जल रहा--

जो दिए लग रहे हैं चारो तरफ और दिवाली का सीन है और यहां पर पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है।